दूसरे जो है वो नहीं पहने हैं वो बंबू को हाथ पकड़ के रखें।

ब्राउन कलर का है दो है और वाइट कलर के दो है।

और एक स्टैंड के ऊपर जो खड़े हुए इंसान दिखाई दे रहे--

एक ब्राउन कलर अ सॉरी ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और वाइट कलर का पैंट ।

और ऊपर बहुत ही अच्छा मौसम का स्काई दिखा हुआ --

बहोत सारे लोग अंदर जा रहे है और बहोत कुछ लेकर जा रहे है और एक लड़का जो जाने की कोशिश कर रहा है ब्ल्यू कलर का टीशर्ट है उसका।

बाजू में जो है ऊपर जो है ओ पतर का शेड लगा हुआ--

यहां पे एच_डी_एफ_सी का जो बैंक है उसका बैंक यहां पे है।

यहां पे इंट्रस्ट वन मंथ फ्री में भी मिलता है।

ये एक अभी अभी साफ किया हुआ पूल है।

ऊपर जो है वो बहोत वॉल जो है रूफ जो है बहोत पुराना हो चुका है वो कभी भी टूट जाए।

और पानी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है।

और वो एक गुफा की तरफ देख अ खड़ा है।

यहां एक फैमिली जो बिहारी है वो छठ पूजा के लिए जा रही है।

और जो अ फैमिली का मेल पर्सन है वो उसके सर पे सारा सामान रख के लेके जा रहा --

और बहोत सारे अ येल्लो कलर के लाइट्स है।

सोफा लगाया हुआ है डिनर टेबल भी है।

और जो काउंटर का टेबल लगाया हुआ है उसके ऊपर व्हाइ अ रेड कलर का और पर्पल का फ्लावर्स डेकोरेशन किया गया है।

ब्लैक कलर का इंसान है यहां पे बीच में और वाइट कलर के टी शर्ट एक इंसान काउंटर पे खड़ा है।

एक येलो कलर का स्टॉप करने के लिए वो इस एक ये भी है।

ये एक भवन है दिनकर भवन करके।

और एक रेड कलर का साड़ी पहनते हुए एक आंटी आ रही है।

तीन चार अ जो पेड़ है वह सूखे हुए दिखाई दे रहे --

यहां पे एक लैपटॉप भी है सैनिटाइजर है स्कैनर भी है।

और नीचे जो ग्लास जैसे दिख रहा है उसके अंदर किटकैट और वैसे वाले चॉकलेट रखा हुआ है।

जिसके अंदर ब्लू कलर का ऑरेंज कलर का और ग्रे कलर का मशीन दिखाई दे रहा है।

और टॉयज वगैरह है छोटे छोटे कपड़े भी है बेडशीट है।

सर के नीचे रखने वाला और तकिया भी है।

और बिल्डिंग जो है वो ऑरेंज और लाइट येलो के पेंटिंग से बना हुआ है।

और बहुत सारे टाइल्स के रोल लगाया हुआ है।

और लास्ट में दिखाई दे रहा है कि वहां पे एक ट ट्रेन का डब्बा भी है।

इसके बहाव बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे।

और यहां पे बहोत सारे डॉक्टर अवेलेबल है बोर्ड पे लिखा हुआ --

और ये जो बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है वो ब्लू कलर और वाइट कलर का है।

जिसके ऊपर से इंसान आ जा सकते है ट्रेवल कर सकते--

और आजू बाजू में ब्लैक और वाइट का स्टैंड लगाया हुआ है कि उस उधर से कोई गिरे ना।

और साइड में जाने के लिए एक ब्रिज बनाया हुआ है।

बाजू में बहोत सारे पेड़ लगाए हुए है तो उसका शैडो भी गिर रहा--

ऊपर पत्र अ ये सोलर पैनल्स भी है।

एक यहां पे वूमेंन्स के लिए और यहां पे मेंस के लिए--

व ग्रीन कलर के टेबल्स चेयर लगाया हुआ है और टेबल जो है सिंपल है।

जो ग्रे कलर का है वो देख रहा है।

एक व्हाइट कलर का है जिसका कंस्ट्रक्शन चालू है।

और एक जो ब्लू कलर के बिल्डिंग है उसके अंदर अ दो अंकल बैठे हुए है।